लिबर ऑफिस ड्रा में ऑब्जेक्ट्स के साथ कार्य करने की बुनियादी बातों पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को कट कॉपी पेस्ट करें हैंडल्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स का गतिशीलता से आकार बदलें
ऑब्जेक्ट्स को व्यवस्थित करें
ऑब्जेक्ट्स को समूहीकृत और असमूहीकृत करें
समूह में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का सम्पादन करें
एक समूह के अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्थानांतरित करें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
चलिए वॉटरसाइकिल फाइल खोलते हैं जिसे हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था
अब इस चित्र में तीन और बादल कॉपी और पेस्ट करते हैं
पहले बादल चुनें फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और कॉपी पर क्लिक करें
फिर पेज पर कर्सर रखें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए फिर से दायाँ क्लिक करें और पस्ते पर क्लिक करें
किन्तु हम केवल एक ही बादल देख रहे हैं
वो बादल कहाँ है जिसे हमने कॉपी और पेस्ट किया
कॉपी किया हुआ बादल असली बादल के ऊपर पेस्ट हुआ है
बादल को चुनें और उसको बायीं तरफ स्थानांतरित करें
इसी प्रकार से एक और बादल बनाते हैं
बादल चुनें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और कॉपी पर क्लिक करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए फिर से दायाँ क्लिक करें और पस्ते पर क्लिक करें
अब कॉपी किये हुए बादल को चुनें और उसे बायीं तरफ स्थानांतरित करें
हम ऑब्जेक्ट्स की प्रतियाँ बनाने के लिए शॉर्टकट कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए CTRLC एक ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए CTRLV एक ऑब्जेक्ट को कटी करने के लिए CTRLX बादल चुनें और CTRL और सी कीज़ को एक साथ दबाएँ
बादल कॉपी हो चुके हैं
पेस्ट करने के लिए CTRL और व कीज़ को एक साथ दबाएँ
अब बादल चुनें और उसे इच्छित जगह पर स्थानांतरित करें
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
अपनी ड्रा फाइल में दो पेज जोड़ें
पहले पेज पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाएँ
एक ऑब्जेक्ट को पहले पेज से दूसरे पेज पर कॉपी करें
जाँचिये कि कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है
एक ऑब्जेक्ट को कट करें और उसे पेस्ट करें
इस उद्देश्य के लिए आप शॉर्ट कट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं
जाँचें यदि ऑब्जेक्ट की प्रति बनती है जब आप उसे कट करते हैं
चलिए इस बादल का आकार बदलते हैं
अतः पहले इसे चुनें
अब हेंडल्स दिखते हैं
अगला कर्सर को एक हैंडल पर रखें जबतक एरोहेड्स न दिखें
अब बाएँ माउस बटन को दबाकर रखें और बादल को छोटे करने के लिए एरो को अंदर की ओर ड्रैग करें
इसे बड़ा करने के लिए एरो को बाहर की ओर ड्रैग करें
इस एरो को बड़ा करने के लिए पहले इसे चुनें
अब कर्सर को एक हैंडल के ऊपर ले जाएँ
नीचे वर्ग के साथ एक छोटा पारदर्शी एरो कर्सर की नोक पर दिखता है
अब कीबोर्ड पर Shift बटन दबाएँ बायाँ माउस बटन दबाकर रखें और एरो के हैंडल का इस्तेमाल करके उसे नीचे ड्रैग करें
ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए यह काफी सरल है यदि आप Shift बटन दबाते हैं है न
हैंडल्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट के आकर को बदलने को डायनामिक रिसाइजिंग कहते हैं
इसका मतलब है कि हम वास्तविक माप का इस्तेमाल नही कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट्स का वास्तव में साइज़ बदलना हम आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
इसी प्रकार से इस आयत की चौड़ाई बढ़ाते हैं
आयत चुनें कीबोर्ड पर Shift बटन दबाएँ और इसे ऊपर ड्रैग करें
ड्रा विंडो के नीचे स्टेटस बार पर देखें
ध्यान दें कि जब आप आयत का फिर से आकर बदलते हैं विस्तार बदल जाता है
स्टेटस बार स्थान में और विस्तार में बदलाव को प्रदर्शित करता है
अब बादलों और सूर्य को जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा व्यवस्थित करते हैं
बादलों को पहचानने के लिए उन्हें बायीं से दायीं तरफ नम्बर देते हैं
नम्बर प्रविष्ट करने के लिए इस बादल को चुनें डबल क्लिक करें 1 टाइप करें
उसी प्रकार से अन्य बादलों को भी नम्बर दें
अब बादल 4 चुनें और इसे सूर्य के ऊपर रखें
सूर्य के पीछे भेजने के लिए बादल पर दायाँ क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलें
अरेंज पर क्लिक करें और सेंड बैकवार्ड चुनें
बादल 4 अब सूर्य के पीछे है
सेंड बैकवार्ड एक ऑब्जेक्ट को वर्तमान परत के पीछे भेज देता है
अब बादल 3 को चुनें और इसे सूर्य के ऊपर रखते हैं
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें अरेंज पर क्लिक करें और सेंड टो बैक चुनें
बादल 3 अब सूर्य और बादल 4 दोनों के पीछे है
सेंड टो बैक ऑब्जेक्ट को अंतिम परत पर भेज देता है
बादल जैसे स्लाइड में दिख रहे हैं वैसे व्यवस्थित करना काफी सरल हो गया है
चलिए बादल 4 चुनते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें अरेंज पर क्लिक करें और ब्रिंग टो फ्रंट चुनें
ब्रिंग टो फ्रंट ऑब्जेक्ट को प्रथम परत पर ले आता है
फिर बादल 3 चुनें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें अरेंज पर क्लिक करें और ब्रिंग फॉरवर्ड चुनें
ब्रिंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट को एक परत आगे ले आता है
अब बादल 2 चुनें और इसे बादल 1 पर रखें बादल जैसे स्लाइड में प्रदर्शित हैं वैसे व्यवस्थित हैं
अगला बादलों से नम्बर्स मिटायें
यह करने के लिए बादल चुनें और डबल क्लिक करें
फिर नम्बर चुनें और कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएँ
इस नियत कार्य के लिए यहाँ ट्यूटोरियल रोकें
एक वृत्त एक वर्ग और एक सितारा बनाएँ और उन्हें जैसा नीचे प्रदर्शित है वैसे व्यवस्थित करें
प्रत्येक ऑब्जेक्ट चुनें और अरेंज मेन्यू से प्रत्येक ऑप्शन को लागू करें
देखें कि प्रत्येक ऑप्शन के लिए आकृतियों की व्यवस्था कैसे बदलती है
अब जैसा इस स्लाइड में प्रदर्शित है वैसे ऑब्जेक्ट रखें और ब्रिंग टो फ्रंट और सेंट टो बैक ऑप्शन को चेक करें
अगला जल चक्र आकृति में जैसे इस स्लाइड में प्रदर्शित है वैसे पेड़ जोड़ें
हम एल ब्लॉक एरो और एक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके एक पेड़ बनायेंगे
इंसर्ट और फिर स्लाइड पर क्लिक करके इस ड्रा में एक नया पेज जोड़ें
यह हमारी फाइल में एक नया पेज जोड़ेगा
पेड़ का तना बनाने के लिए ड्राइंग टूलबार से ब्लॉक अरोज चुनें
उपलब्ध आकरों को देखने के लिए छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें और स्प्लिट अरो चुनें
कर्सर को पेज पर रखें बाएँ माउस बटन को दबाकर रखें और नीचे और किनारे की ओर ड्रैग करें
आपने दो शाखाओं के साथ पेड़ का तना बना लिया है
चलिए शाखा में पत्तियाँ जोड़ें
ड्राइंग टूलबार से स्टार्स चुनें
फिर छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें और एक्सप्लोजन चुनें
अब द्रव पेज पर जाएँ कर्सर को एरो के बाएँ कोने पर रखें आकृति बनाने के लिए बायाँ माउस बटन दबाकर रखें और बायीं ओर ड्रैग करें
अतः हमने पेड़ में पत्ते जोड़ दिये हैं
हम इस आकृति को पेड़ की दायीं शाखा में भी कॉपी करेंगे
आकृति चुनें
कॉपी करने के लिए कीबोर्ड पर CTRLC कीज़ दबाएँ
पेस्ट करने के लिए CTRLV दबाएँ
हम आकृति को पेड़ की दायीं शाखा की ओर स्थानांतरित करें
हमने एक पेड़ बना लिया है
अब ट्री चुनें और इसे नीचे स्थानांतरित करें
केवल पेड़ का तना नीचे जाता है पत्ते नहीं
यहाँ पेड़ का तना और दो पत्ते भिन्न ऑब्जेक्ट्स की तरह संसाधित हो रहे हैं
पेड़ के तने को वापस जहाँ था वहाँ स्थानांतरित करते हैं
सीखते हैं कि पेड़ के तने को और दो पत्तों को एक खंड में इकठ्ठा कैसे करें
समूह में कोई भी बदलाव उस समूह के अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स पर लागू हो जाएँगे
पहले पेज पर क्लिक करें जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स चुनित न हों
फिर ड्राइंग टूलबार से सिलेक्ट पर क्लिक करें
कर्सर को पेज पर ले जाएँ और पेज पर क्लिक करें
अब बायाँ माउस बटन दबाकर रखें और ड्रैग करें जिससे कि सभी ऑब्जेक्ट्स चुनित हो जाएँ
आप एक डॉटेड आयत देखेंगे
सुनिश्चित कर लें कि पेड़ के सभी ऑब्जेक्ट्स इस आयत के अंदर चुनित हों
वैकल्पिक रूप से आप Shift की दबाकर और फिर प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके दो या अधिक ऑब्जेक्ट्स चुन सकते हैं
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और ग्रुप चुनें
अब पेड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें
हैंडल्स प्रदर्शित होते हैं जैसे कि वह एक ऑब्जेक्ट के भाग हों
यह ऑब्जेक्ट्स अब एक खंड की तरह संसाधित होते हैं
इन्हें अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह असमूहीकृत करने के लिए पेड़ को चुनें दायाँ क्लिक करें और अनग्रुप चुनें
ऑब्जेक्ट्स अब असमूहीकृत हो गये हैं और तीन अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह संसाधित होते हैं
इन्हें फिर से इकट्ठा करें
Shift की दबाएँ और एक के बाद एक ऑब्जेक्ट चुनें
दायाँ क्लिक करें और ग्रुप चुनें
पेड़ को अपने मुख्य ड्राइंग पेज पर कॉपी करें
अतः कॉपी करने के लिए Ctrl और सी पेज पर क्लिक करें और पेस्ट करने के लिए Ctrl और व
अब मान लें कि समूह में हम एक अकेले ऑब्जेक्ट का सम्पादन करना चाहते हैं
तो हम क्या करेंगे
मैं ऑब्जेक्ट्स का असमूहीकरण और फिर से समूहीकरण किये बिना इसे करने का एक सरल तरीका दिखाता हूँ
ग्रुप चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें
Enter ग्रुप चुनें
ध्यान दें कि समूह के बाहर सभी ऑब्जेक्ट्स निर्योग्य हो गये हैं
केवल समूह के अंदर के ऑब्जेक्ट का सम्पादन कर सकते हैं
उदहारणस्वरूप पेड़ के दायीं तरफ के पत्ते को चुनें और इसका आकार कम करें
अन्डू करने के लिए Ctrl ज़ दबाएँ और आगे बढ़ें
अब हमें पेड़ का आकार कम करना होगा जिससे कि यह जल चक्र ड्राइंग में बैठ जाये
अतः हमें समूह के एडिट मोड़ से बाहर आना होगा
समूह से बाहर आने के लिए पेज पर कर्सर रखें दायाँ क्लिक करें और एक्सिट ग्रुप चुनें
हम अब समूह के एडिट मोड़ से बाहर हैं
पेड़ चुनें और कर्सर को नीचे दायें हैंडल पर ले जाएँ
कर्सर आकार बदलने से एरो में प्रवर्तित हो जाता है
एरो को अंदर की ओर ड्रैग करें
और हमने पूरे पेड़ का आकार कम कर लिया है
इस चित्र में तीन और पेड़ जोड़ें
पेड़ चुनें और कॉपी करने के लिए ctrl और सी और पेस्ट करने के लिए तीन बार Ctrl और व
यह पेड़ की तीन प्रतियाँ बना देगा
अब हम इन्हें इच्छित स्थान पर स्थानांतरित करेंगे
इस कार्य को सभी पेड़ों के लिए दोहराएँ
अब ध्यान रहे कि प्रत्येक पेड़ तीन ऑब्जेक्ट्स से बना है
प्रत्येक पेड़ भी खुद से समूह बनाते हैं
हमने ऑब्जेक्ट्स का समूह बना लिया है
ड्राइंग में अब पानी तत्व जोड़ते हैं
पानी का प्रभाव देने के लिए हम आयत के आगे एक त्रिकोण जोड़ेंगे और फिर एक वक्र जोड़ेंगे
एक त्रिकोण बनाने के लिए ड्राइंग टूलबार से बेसिक शेप्स चुनें
छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें और समकोण त्रिभुज चुनें
इसे बनाएँ और इसे आयत के आगे रखें
अब पानी की गतिविधि को दर्शाने के लिए रंग से भरा एक वक्र बनाते हैं
ड्राइंग टूलबार से कर्व चुनें
अब फ्रीफॉर्म लाइन फिल्ड पर क्लिक करें
फिर कर्सर को त्रिकोण के शीर्ष पर रखें बायाँ माउस बटन दबाकर रखें और इसे नीचे ड्रैग करें
वक्र को व्यवस्थित करें जिससे कि यह बहते पानी की तरह दिखे
त्रिकोण और वक्र एक साथ पानी बनाते हैं इन्हें केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में समूहीकृत करें
ड्राइंग टूलबार से सिलेक्ट पर क्लिक करें
अब कर्सर को पेज पर ले जाएँ बायाँ माउस बटन दबाकर रखें और त्रिकोण और वक्र को कवर करने के लिए ड्रैग करें
दायाँ क्लिक करें और ग्रुप चुनें
हमने जल चक्र की बुनियादी रूपरेखा बना ली है
यहाँ आपके लिए एक और नियत कार्य है
इस चित्र को खुद से बनाएँ
इसी के साथ हम ड्रा पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में आपने ऑब्जेक्ट्स के साथ कार्य करने पर बुनियादी बातों को सीखा
आपने सीखा कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को कट कॉपी पेस्ट करें
हेंडल्स का इस्तेमाल करके गतिशीलता से ऑब्जेक्ट्स का आकार बदलें
ऑब्जेक्ट्स को व्यवस्थित करें
आब्जेक्ट्स का समूहीकरण और असमूहीकरण करें
एक समूह के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सम्पादन करें
समूह के अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्थानांतरित करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ